और आइड साइड में कुछ टीचर वगैरह भी खड़ी हुई दिख रही है और बाजू मे कुछ हरे - हरे वृक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दिन का समय है आसमान दिख रहा --

और साइड में कुर्सी बिछी हुई है और नीचे कुछ मेटी भी लगी हुई है और हाथ में गले में कुछ फूल वगैरह क्या --

यह सामने कोई तीन चार मूर्ति दिखाई दे रही हैं जहाँ एक पंडहर लगा हुआ हैं और सामने कुछ तीन चार लेडिज हैं।

फैक्ट्री मे स्टील के डिब्बे लगे हुए हैं और साइड मे पावर बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं स्टार्टर स्विच हैं और स दिन का समय--

यहाँ कुछ का पोस्टर लगे हैं आइट साइड से हैं और बाहर मे ग्राउन्ड मे कुछ व्यक्ति--

यह एक पानी दिख रहा है जहाँ एक हाथी व ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे कुछ पुल वगैरह लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ एक व्यक्ति हाथ में--